शायद यह लकड़ी या मिट्टी के बने हुए नजर आ रहे हैं।

व्यक्ति का पैर को भी देखा जा सकता है अगल-बगल में पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ऊपर में नीला आकाश है।

एक डढ़वारी जैसा दिया गया है जो की --

अगल-बगल में कुछ यहां पे कराकट जैसी ढाली गई है जहां पे कुछ लोग बैठते हुए नजर आ रहे हैं।

और अगल बगल में थोड़े बहुत हल्के हल्के पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

और वह कुछ लोग नाव को चलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर उपस्थित ज्यादातर पेड़ लंबे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा खाई दिखाई दे रहा है खाई के अंदर में पानी भरा हुआ है और उसके चारों तरफ़ --

म जिम करने की सामानों को भी देखा जा सकता है ऊपर में पंखा लगा है।

पीछे एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है सामने से एक --

एंड सामने यहाँ पर एक स्कूटर भी लगा हुआ देखा जा सकता है।

सामने एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है जो की व्हाइट कलर का है।

हलकी हलकी घासे भी देखि जा सकती है इसके दूसरी तरफ में भी कुछ घासे वगेरा लगी हुई नज़र आ रही है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

सामने एक व्यक्ति है जो कि चेयर पर बैठा हुआ है और वह कुछ करते हुए देखा जा सकता है।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

ऊपर की तरफ में बहुत सारे फूल वगैरह बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ छोटे छोटे पत्थर है कुछ बड़े बड़े पत्थर है सामने के लिए धोभी धोभीघाट भ बनायीं गयी है जहा पे धोभी लोग कपडे खिचते हुए --

और यह रात्रि का समय है ऊपर की तरफ में कुछ चरखी जैसी चीज़ लगी हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगो को देखा जा सकता है।

यहां पर बहुत सारे लोगों को देखा जा सकता है सामने की तरफ में कुछ मछलियां रखी हुई नजर आ रही है नीचे --

इसके चेहरे पे पुरे काले रंग किये हुए दिखाई दे रहे है जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही है बगल में एक सीढ़ी है।

और सामने के तरफ में एक बहुत पुरानि मकान दिखाई दे रही है।

बगल-बगल में पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला आकाश देखा जा सकता है।

और सामने के तरफ में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है। सामने एक बहुत बड़ा सा ग्लास दिखाइ दे रहा है जिसके दूसरी तरफ में --

यहां पर कुछ कीचड़ वगैरह भी दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ में --

कुछ मकानें दिखाई दे रही हैं या देखने में काफी सुंदर लग रहा है।

एक व्यक्ति है जो कि लाल कलर के शर्ट पहने हुए हैं और ये बाइक पे बैठा है।

इसकी दूसरी तरफ में कुछ गिट्टी वगैरह रखी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ को देखा जा सकता है।